ये एक नाई की दुकान का चित्र है जहां पर एक लड़का बाल काट रहा है।

ये एक विद्यालय का चित्र है यहां के विद्यार्थी कलाकारी कर रहे हैं।

ये पाँच लड़के बैठे हुए हैं।

उस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है जहां पर लोग खड़े हुए हैं।

मजदुर खड़े हुए हैं काम चल रहा है।